जो येलो और ऑरेंज कलर की है और थोड़ा सा ब्राउन भी।

इस तस्वीर को देखकर मुझे--

मुझे इस पोतो पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

इस पोटो पर तीन व्यक्ति ए_टी_एम के पास करा हैं।

मुझे इस पिक्चर पर तीन घर दिखाई दे रहे हैं।

बारे भी रखे गए हैं।

मुझे इस तस्वीर पर एक बाइक दिखाई दे रहा है।

एक लड़का ब्रिज का ऊपर से नीचे पानी को खींच रहा है जिसमें नीचे पर पानी और बहुत ज्यादा हरी भरी घास फूस है।

यह ब्रिज एक रोड से लिंक है।